जिनमें से एक ने वाइट कलर की शर्ट पेहनी है और एक ने रेड कलर की शर्ट पेहनी है।

यहाँ पर एक बहुत बड़ी सी बिल्डिंग बनी हुई दिखाई दे रही बनती हुई दिखाई दे रही है।